यहां पास एक छोटी सी झील दिखाई पड़ रही है जो अपलैंड से पानी गिर रहा है।

और यहां पास एक हैंडपंप भी लगा हुआ है और यहां कुछ लोहे की सामान रखा हुआ है।

यहां पास एक अंकल बैठे हुए हैं जो यह मछली काट काट के बेच रहे हैं।

यहां कुछ ब्लू कलर की तो कुछ पिंक कुछ व्हाइट कुछ हरी कुछ ऑरेंज --

और चाय बनाने वाली ढंका का भी रखा हुआ है।

बगल में एक गेट भीं है और उसके बगल में पर्पल कलर का बोर्ड भीं बना हुआ है।

और यहां चर्च के जैसा प्लस का निशान भी बनाया गया है और यहां पर पानी की सप्लाई भी और बगल से एक ट्रेन भी जा रही है।

और यहां हरे भरे पेड़ भी लगाए गए हैं और--

यहां पास हरे भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

ब्लू कलर का यहां प से खंभा लगा हुआ है।

यहां पास एक बस की फोटो दिखाई जा रही है जिसमें ब्ल्यू कलर की सीट है और ऊपर काले रंग--

नीचे साइड हरा कलर का कारपेट भी बिछी हुई है।

और रोड में स्टेट लाइट भी लगइ गई हैं।

और मैगी मसाला और सूप से का पैकिट जैसी--